यह एक मार्केट है यह एक मार्केट है इसमे बहोत सारे कपड़े लगे हुए है लगे हुए है और किड्स का एक शॉप है और एक आदमी पॉकेट से कुछ निकाल रहा है यह बहोत घिच-किच वाला मार्केट लग रहा है और दो बाइक लगा हुआ है।